कुछ बच्चे एक सी कॉस्टयूम पहन कर कुर्सी में बैठे हुए हैं।

तथा कुछ लोग बैठकर इस स्क्रिन में बातें कर रहे है।

दुकान बेस्ट शोरूम नजर आ रहा--

इस समुद्र के ठीक किनारे एक घाट में बहुत ही बड़ी बड़ी सी नाव बंधी हुई है।

मुझे इस फोटो पर एक बहोत ही बड़ा सा--

यह उसके बाजू मे एक किराना स्टोर भी--

अलग अलग रंग की बनी हुई प्लास्टिक की अलमारियां नजर आ रही हैं।

एक बालकनी में खड़ा हुआ लड़का नजर आ रहा है।

इस पेट्रोल पंप में बहोत बड़े बड़े ट्रक --

व बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

बल्लो के बाजू में दो बड़े बड़े चके भी रखे हुए हैं।

मुझे इस फोटो में एक--

भी हुई है इन नाव का कलर अलग-अलग रंग का है।

बहुत सारी एक सी सफेद रंग की दुकान नजर आ रही है।

इस दुकान के बाहर दो चेयर वै कुछ बैठने के लिए टेबले भी रखी हुई--